यह एक जगह है जहां पर ढेर सारे बुट्टे रखे हुए है कचरा दिखाय दे रहा है बुट्टे का कलर ग्रीन है।

इस इमेज में देख सकते है की एक बड़ी सी स्टेशनरी है जहां पे रेड कलर की ढेर सारी डायरी रखी हुई हैडायरी में भगवान की तस्वीर--

जैसे की आप देख सकते है आप ये व्यू मंदिर का है जहां पे ढेर सारी औरतें और आदमी दिखाए दे रहे है दो मंदिर दिखाए दे रहा--

इसमें स्टेज पे लड़कियां और लड़के लोग नाच रहे है और पिछे वाइट कलर का पर्दा लगा हुआ है। रेड ग्रीन ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी --

और वः सब डमी बने हुए है एक तरफ पीछे फिश दिखाई दे रही है। और परदे लगे हुए है |

ये एक बड़ा सा बांध का व्यू है जहा पर पानी तेजी से गिर रहा हैऔर भी ऊपर रास्ता दिखाई दे रहा है एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है साइड में पेड़ भी लगा हुआ है पानी का कलर मिटटी का कलर की तरह है|

पानी का भाव बहुत तेज है।